पानी और झाड़ियां ही झाड़ियां दिख रहीं है और एक पहाड़ सी दिख रही है।

ये कोइ सा शहर है यहाँ पर एक हाईवे है हाईवे पर बहुत सारी कारें ऑटो --

के पास में एक बैग रखा हुआ है और सामने एक घड़ी लगी हुई है पास में खिड़की पर --

यहाँ पर दो लोग हैं एक लड़का सफ़ेद शर्ट पहने खड़ा हुआ है एक --